बहुत अच्छी सी सजावट की गई है बाहर फूल मालाओं से।

जैसे कि मैं देख रहा हूं सावन द फूड जी बहोत बढ़िया रेस्टोरेंट बना हुआ है।

मछलियां दिख रही है जो ताजगी है मछलियो मे--

बोरे के कट्टे रखे हुए हैं और--

और एक बोर्ड लगा हुआ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ।

की गाड़ियों की कांच की दुकान हैं और यहां पे टायर रखे हुए हैं एक भाई साहब कुर्सी में बैठे हैं वो लगता है।

रेलवे स्टेशन का बाहर का सीन हैं और जे यात्रीगण अंदर की तरफ जा रहें हैं।

और भारतपुर बहोत अच्छा धाम हैं जहां भगवान भोलेनाथ निवास करते हैं पहले रुपनाथ मे थे।

ये पहाड़ है यहां हरियाली है और एक--

जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कि पेट्रोल पंप है पेट्रोल पंप में--

और अच्छा रेलवे स्टेशन है बहोत बढ़िया रेलवे स्टेश--

मकान बना हुआ है और ग्रिल लगी है ये नजारा मेरी कुछ छत का नजारा आ रहा है जैसे कि--

और ये ट्रेडर्स है यहां नल फिटिंग --

बहोत सारी समाग्रीयां उपलब्ध है और ये ट्रेडर्स --

एक व्यक्ति मोबाइल लिए हुए किसी दुकान में बैठा है।

और उसे ब्रिज के इस पर और उसे पर जाने के लिए ये ब्रिज ये बनाया हुआ है और ब्रिज ये बहुत अच्छा है।

औ इस ऊं शॉप में बहोत अच्छे अच्छे मोबाइल वीवो --

एक क छोटा सा मकान हैं उस पे चूल्हा हैं चूल्हे के बाजू मैं दो छोटी-छोटी मेंज रखे रखे हुवे हैं और सामने दो कैम्पर हैं।

एक एगो बना हुआ है और एक पीढ़ा चौकी भी लाए--

की एक कमरा है कमरे में बड़िया सोफा रखा हुआ है सोफा के उपर फूल है।

डिजाइन दिखाई गई है और ये कमरा बहुत सुंदर है।

की पीछे बहुत अच्छा भवन बना हुआ है और उसके सामने ये लाइन लाइन बना के एक अच्छी--

और लैपटॉप कि पीछे बहोत बढ़िया पेंटिंग है जिसमें एक डॉगी की तस्वीर बनी हुई है।

भारत बूट हाउस और भारत बूट हाउस इतना बढ़िया किसी मैरिज गार्डन की तरह सजा हुआ है उसके अंदर--

जैसे कि मैं देख सकता हूं लोक सेवा केंद्र।

पांच लोगों को बहोत बढ़िया तरीके से ब्लै व्हाइट बोर्ड में लिखकर कुछ समझा रहे हैं।

उनके सामने ठीक एक मार्केट है जिसमें बहोत सारी--